बिल्डिंग है और उसके पास में घर बना हुआ है एक बॉक्स रखा हुआ है और क्या कहते है बिल्डिंग में बहुत सारे विंडो ऐ लगे हुए है एक साइड की तरफ और विडो लगी है वह पे ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है और एक छोटी सी ऊंची सी ईमारत खड़ी हुई है।

ये ए शॉप है जिसका नाम अमित वॉशिंग सेंटर है बोर्ड बना हूआ है एक गाड़ी खड़ी हुई है वहा पे--

यह एक जगह है यहाँ पे पुल है आगे पानी दिया गया है पेड़ पोधे लगे हुए है और ऊपर एक बॉउंड्री से दे रखी है पुल के ऊपर--

पानी पानी पड़ा हुए है टंकी सी बनी हुए है पानी की एक खम्भा लगा हुए है लम्बा सा बत्ती के तार भी गए हुई है यहाँ पे पेड़-पोधे हैं। कलर --

लम्बा सा दिया है और टीन डाली हुई है ब्लू कलर से और ऊपर छोटे छोटे मकान से लग रहे है यहाँ पे और एक--